एक मंदिर दिखाई दे रहा है मंदिर में काली माता का मंदिर दिखाई दे रहा है वहाँ पे घंटी दिखाई दे रही है गणेश जी दिखाई दे रहे है रिद्धि-सिद्धि की तस्वीर बनी हुई है दो शेर दिखाई दे रहे --

यहाँ पे चप्पल जूते दिखाई दे रहे हैं ऊपर आसमान दिखाई दे रहा है मन्दिर का गेट दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर कुछ बिल्डिंगे दिखाई दे रही हैं सब्जी का बाजार लगा हुआ है | यहाँ पे कुछ आलू --

बहुत सारी हिरणें दिखाई दे रही है। एक झोपड़ी बानी हुई है उसमे भी बहुत सारी हिरणें दिखाई दे रही है | पेड़ झाड़ दिखाई दे रहे हैं |

यहाँ पे एक पानी भरा हुआ है वहां पे दो मगरमच्छ दिखाई दे रहे हैं एक एंगल दिखाई दे रहा है बीच में मिट्टी दिखाई दे रही हैं उसमे एक खम्बा गाड़ा हुआ है साइड में कुछ पत्थरें पड़े हुए हैं घास फूस पड़ा हुआ है मि --

यहाँ पे एक रूम दिखाई दे रहा है | वह पे तस्वीरे दो फैन दिखाई दे रही है | और यहाँ पे गद्दा लगा हुआ है वाइट कलर में रेड कलर में एक बैग रखा हुआ है | यहाँ चॉकलेटी कलर में नीचे दीवार दिखाई दे रही है बोर्ड दिखाई दे रहा है।

दुकान लगी है सड़क दिखाई दे रही है। पेड़-पौधे दिखाई दे रहे है बिल्डिंग दिखाई दे रही है आसमान दिखाई दे रहा है नीचे जमीन दिखाई दे रही है।

यहां पे बहुत सारे बकरा बकरी दिखाई दे रहे यहां पे जमीन दिखाई दे रही है हरा-भरा पेड़-पौधा दिखाई दे रहा उसमें।

एक मंदिर दिखाई दे रहा है उसपे झंडे दिखाई दे रहे है लाइट का खंभा दिखाई दे रहा है लाइट के तार दिखाई दे रहे।